बगल में लकड़ी के दरवाजे लगे हुए दिख रहे हैं।

सीलिंग में बहोत सारे लाइटें लगे हुए हैं और पंखे--

यह एक मंदिर की तस्वीर दिखाई दे रही है।

तालाब के किनारे में सीढ़ियां बनी हुई हैं।

यहां पे कुछ लाइटे भी लगे हुए दिख रहे हैं।

यह एक दुकान का तस्वीर दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर दो पानी का टंकी रखा हुआ है।

एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाई दे रही है।

यहां से तार क्रॉस होता हुआ दिख रहा है।

यह एक कैफे की तस्वीर दिखाई दे रही है।

सामने बड़े अक्षरों में फ्रोजन जंक्शन लिखा हुआ है।